पोडर भी रखा हुआ है तेल भी रखा हुआ--

जो फायर एस्टिंगशन भी रखा हुआ है।

और पीछे एक बक्से में चॉकलेट भी रखा हुआ--

यहां पर एक टेक्सटाइल की दुकान है।

और दो लड़कियां बाल खुले रखी हुई हैं।

सिर्फ हेलमेट है और एक्सटेंशन फायर एक्सटेंशन बॉक्स है।

और एकर अ साइकिल पर --